ऊपर व्हाइट बादल लगे हुए हैं जो कि व्हाइट कलर में बोहत ही सुन्दर दृश्य दिखाई दे रहा है।

ये एक बहुत लंबा सा फील्ड है जो कि क्रिकेट स्टेडियम है|

इसके बगल मे वो लाइट का बिजली बोर्ड है एंड वहां पे रेड कलर का डब्बा रखा हुआ है। यहाँ से एक बंदा जा रहा --

कुछ लोग खाना खाने के लिए गए थे जो की यहां पे साथ लंगर चल सकता है।